प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जोकि लाल बहोत ही सुंदर है।

सुंदर और बेहतर है जो कि यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं।

ये काफी खूबसूरत --